और बारिश होने की संभावना है जोकि बहोत सारा काला बादल छाया हुआ है

और अच्छा सा लुक है और यह थोड़ा थोड़ा काला काला स दिख रहा है हमे फोटो मे लेकीन अच्छा गाड़ी है।

यह एक रोड है दोनों साइड घर ही घर है लेकीन यहाँ पे कुछ ही लोग ही दिख रहा है।

ऊपर से प्लस का भी चिह्न चिन्ह दे रखा है और मंदिर टाइप का है।